एक बाइक भी दिखाई दे रहा है जो एक बलेनो दिखाई दे रहा है एक ब्रेजा दिखाई दे रहा है।

फायर इंस्टिट्यूशन का दीवाल पर रखा लगाया गया है।

एक कुर्सी भी दिखाई दे रहा है और एक नीला कलर का कुर्सी कवर किया हुआ दिखाई दे रहा है।

तस्वीर है तस्वीर में एक टेबल दिखाई दे रहा है जो लकड़ी का बनाया गया है ब्राउन कलर से उसपर सनमाइका लगाया गया है।

बगल में कुछ कार्टून में सामान रखे गए है कुर्सियां दिखाई दे रही है जो लाल कलर का दिखाई दे--

बगल में एक जार दिखाई दे रहा है जो और एक दीवाल दिखाई दे रहा है।

एक तस्वीर है तस्वीर में पानी दिखाई दे रहा है जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं।

एक टेबल पे दो बोतल रखे हुए हैं जिसमें एक थम्स अप का है और एक बिसलेरी का है और टिशू पेपर रखे गए हैं जो वाइट कलर का है।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

छोटे छोटे सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं लकड़ी का टेबल भी दिखाई दे रहा है।

पीछे बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है पेड़ भी दिखाई दे रहा है जो हरे कलर का --

बहुत सारे कपड़े रखे गए हैं रैक पे तरह तरह के कलर के हैं जैसे कि लाल पीला हरा।

एक उर्दू में लिखा हुआ बोर्ड टांगा हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारे कार्टून में सामान रखे गए हैं कपड़े।

बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं कुछ आदमी ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

बाहर में माटी फेंका हुआ है गड्ढे खोद कर उसमें पानी जमा है।

तस्वीर में दो ट्रेन दिखाई दे रहे हैं जिसे मालगाड़ी दिखाई दे रहा है बगल में रोड भी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारे लाइट जल रहे हैं और एक बोर्ड दिखाई दे रहा है एक कैम कैमरा दिखाई दे रहा है।

उसके बगल में एक बाइक लगे हुए हैं और उसके बाएं बगल में एक साइकल भी लगा हुआ है।

छे पेड़ दिखाई दे रहा है पेड़ जो हरे कलर का पत्ता दिखाई दे रहा है।